formatting data in calc पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम सीखेंगे:
cell borders और cell background colors format करना
automatic wrapping का उपयोग करके text की multiple lines को format करना
cells merge करना
cell में fit करने के लिए text को छोटा करना
यह tutorial ubuntu linux os वर्जन 1804 और libreoffice suite वर्जन 635 का उपयोग करके recorded किया गया है
पहले calc में cell borders फॉर्मेट करने के बारे में सीखते हैं
अपनी personalfinancetracker ods file खोलें
borders की formatting विशेष cell या cells के block पर की जा सकती है
बायां mouse button पकड़कर cells a2 to a2 चुनें
फिर formatting toolbar पर जाएं और borders icon चुनें
यदि आपने अपनी libreoffice window का आकार बदला है तो कुछ icons दिखाई नहीं दे सकते हैं
उस स्थिति में छिपे हुए icons को देखने के लिए toolbars के आखिर में double arrow icon पर click करें
borders icon पर click करें
विभिन्न border styles के सहित एक ड्रापडाउन box खुलता है
किसी भी styles पर click करें जिसे आप borders पर लागू करना चाहते हैं मैं आखिरी विकल्प चुनूंगी
cells को अचयनित करने के लिए spreadsheet में कहीं भी click करें
ध्यान दें कि cell borders चयनित border style के अनुसार formatted होते हैं
इस बदलाव को ctrl + z कीज़ दबाकर अन्डू करें
यही कार्य हम format cells dialog box का उपयोग करके कर सकते हैं
चयनित cells पर rightclick करें और format cells विकल्प चुनें
या keyboard पर ctrl + 1 कीज़ दबाएं
दोनों तरह से format cells dialog box खुलता है अब borders टैब पर जाएं
हम line arrangement line padding और shadow style के लिए विकल्प देखते हैं
कोई भी इन्हें अपनी आवश्यकतानुसार बदल सकता है
line arrangement section में हम userdefined named एक छोटी preview window देख सकते हैं
presets में मैं तीसरे विकल्प पर click करूंगी
आप देख सकते हैं कि यह प्रिव्यू window में प्रतिबिंबित होता है
जैसा कि दिखाया गया है मैं line section से style width और color भी बदलूंगी
style dropdown से मैं dotted lines चुनूंगी
मैं width 200 pt चुनूंगी और color red चुनूंगी
प्रिव्यू window में बदलावों पर ध्यान दें
अब padding section पर जाएं
ध्यान दें कि सभी मान समान हैं
यदि हम किसी भी एक छोर का padding मान बदलने का प्रयास करते हैं वह सभी बदल जाते हैं
ऐसा इसलिए क्योंकि synchronize विकल्प checked है
यदि हम प्रत्येक छोर के लिए भिन्न मान set करना चाहते हैं
तो synchronize विकल्प अनचेक होना चाहिए
synchronize विकल्प को अनचेक करें
मैं top और bottom margins के लिए padding value 15 mm चुनूंगी
और left और right margins के लिए 1 mm चुनूंगी
आप बाद में स्वतः कई shadow styles समझ सकते हैं
निचले भाग पर ok button पर click करें
अब cells को अचयनित करने के लिए spreadsheet पर कहीं भी click करें
ध्यान दें कि हमारी चुनी हुई border style अब सभी चयनित cells पर लागू हो गई है
हमारे पहले के tutorial में headings में एक default styles set की है
अब background color विकल्प का उपयोग करके headings में कुछ अन्य रंग set करते हैं
a1 बायां mouse button पकड़कर cells a1 to a1 चुनें
फिर formatting toolbar पर जाएं और background color icon के आगे ड्रापडाउन चुनें
background color popup menu खुलता है
वह रंग चुनें जिसे आप cells के background के रूप में लागू करना चाहते हैं मैं orange रंग पर क्लिक करूंगी
बदलाव देखें
अब headings के लिए background color orange set है
calc text के बहुlines formatting के लिए विभिन्न विकल्प प्रदान करता है
उनमें से एक automatic wrapping है
यह यूजर को text की कई lines एक ही cell में type करने की अनुमति प्रदान करता है इसका अभ्यास करते हैं
cell b9 पर rightclick करें और format cells विकल्प चुनें
फिर alignment टैब पर जाएं
properties section में wrap text automatically विकल्प check करें फिर निचले भाग पर ok बटन पर क्लिक करें
अब cell b9 में निम्न text type करें
this is a personal finance tracker it is very useful और एंटर दबाएं
हम देख सकते हैं कि एक ही cell में कई statements wrapped हो गए हैं
ctrl + z कीज़ दबाकर इन बदलावों को अन्डू करें
अब हम सीखेंगे कि calc में cells merge कैसे करें
पहले heading sn में 1 मान वाली cell पर click करें
अब keyboard पर shift की पकड़कर रखें और cell पर click करें जिसमें salary शब्द है
चयनित cells चिन्हांकित हो गई है
formatting bar में merge and centre cells icon पर click करें
merge cells dialog box खुलता है
यहां cells को मर्ज करने के लिए प्रिव्यू के साथ तीन विकल्प प्रदर्शित होते हैं हम अपनी आवश्यकतानुसार कोई एक चुन सकते हैं
मैं दोनों cells का कंटेंट एक ही cell में स्थानांतरित करना चाहता हूं
अतः मैं move the content of hidden cells into the first cell radio button चुनूंगी
फिर dialog box के निचले भाग पर ok button पर click करें
ध्यान दें कि चयनित cells और उनके मान एक साथ merged हो गए हैं
वैकल्पिक रूप से हम menu bar में format menu पर क्लिक करके cells को merge कर सकते हैं
submenu से merge cells पर जाएं और किसी एक पंसदीदा विकल्प को चुनें इन्हें बाद में स्वतः समझें
ctrl + z कीज़ पर क्लिक करके इन बदलावों को अन्डू करें
अब हम सीखेंगे कि cell में text को fit करने के लिए छोटा कैसे करें
cell में data का font size cell में data को fit करने के लिए स्वतः ही व्यवस्थित किया हो सकता है
पहले cell b10 में निम्न text type करें this is for the month of june फिर enter दबाएं
text को छोटा करने के लिए cell b10 पर click करें
फिर format cells विकल्प चुनें
format cells dialog box खुलता है
alignment टैब पर जाएं
properties section में shrink to fit cell size चेकबॉक्स पर click करें
फिर dialog box के निचले भाग में ok button पर click करें
ध्यान दें कि cell में पूर्ण text छोटा हो गया है और cell में fits हो गया है
यह इसके font size कम होने से स्वतः व्यवस्थित होता है ताकि text cell में fits हो जाए
ctrl + z कीज़ एक साथ दबाकर बदलावों को अन्डू करें
फिर file को सेव और बंद करें
इसी के साथ हम इस tutorial के अंत में आ गए हैं संक्षेप में
इस tutorial में हमने सीखाः
cell borders और cell background colors format करना
automatic wrapping का उपयोग करके text कई lines format करना
cells को merge करना
cell में fit करने के लिए text को छोटा करना
नियतकार्य के रूप में:
सभी headings चुनें
headings को grey background रंग दें
automatic wrapping का उपयोग करके cell a10 में text type करेंthis is a department spreadsheet
cell a11 में fit करने के लिए text को छोटा करें
निम्नलिखित link पर मौजूद video spoken tutorial project को सारांशित करता है कृपया इसे डाउनलोड करें और देखें
हम spoken tutorial का उपयोग करके कार्यशालाएँ आयोजित करते हैं और प्रमाणपत्र देती है अधिक जानकारी के लिए कृपया हमें लिखें
कृपया अपनी समयबद्ध queries को इस forum में post करें
spoken tutorial project mhrd भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है
इस tutorial का योगदान मूलरूप से 2011 में desicrew solutions pvt ltd द्वारा दिया गया है यह स्क्रिप्ट विकास द्वारा अनुवादित है आईआईटी बॉम्बे से मैं जया अब आपसे विदा लेती हूं धन्यवाद